एक जेन्स बैठा हुआ है पानी वाला झरना भी लगा हुआ है एक लेडीज भि --

ये लग रहा है कि पार्किंग है पार्किंग में एक ऑटो लगा हुआ हैजो ब्लैक कलर का --

ऊपर में पंखा लगा हुआ है लेडीज भी है पीछे योगा कर रही है वाइट कलर का लग रहा हॉल बना हुआ है उसके बाद--

उसके बाद चिंडेन डे फन लिखा हुआ है उसके पीछे भी खिलौना बहुत सारा गेट है पीछे--

इतना बड़ा बड़ा गाछ सब है उसके बाद नीचे फ्लावर भी लगा हुआ है फर्स है नीचे--

यहां पे एक फोर व्हीलर अम्म् गाड़ी बाइक लगा हुआ है पेट्रोल पंप है।